यहाँ पे गाय लोग बाल्टी में पानी पी रहीं हैं।

यह एक हवाई अड्डा है। ये हवाई अड्डा बोहोत ही बड़ा है और बोहोत ही अच्छा है।

और दोनों तरफ से गाड़ी आने-जाने वाली रोड है।

यह एक सब्जी मंडी है । यहाँ पे सब सब्जी बिकती है ।

यहाँ पे स्टेज है इस स्टेज पे एक लड़का और लड़की माइक पे कुछ बोल रहे हैं।

ये बाल जो कटवाया है इस डिज़ाइन से वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसपे और सुन्दर भी दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया --